जिस से आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकतें हैं गाइस । थैंक यू गाइस ।

इसके पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते है कि कितना क्यूट लग रहा है हर जगह।

बोल सकते या मल्टी बोल सकते या हाउस बोल सकते कितना क्यूट लग रहा है।

हेलो गाइस पिक्स- पिक में आप देख सकते हैं कि दो डोक्टर एक डाॅगी को किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से।

हैलो गाइस मैं आपको इस पिक के बारे में बताने जा रहा हूँ ये आप देख सकते --

एंड बाजु में आलू टमाटर की भी खेती की गयी है।

हैल्लो गाइस आप इस पिक को देख सकते हैं कि ये कितना वंडरफुल लग रहा है।

हैं जिसमें कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा गाइस ।

जिसमें बहोत ही अच्छा लग रहा है एंड बहोत अच्छा ब्यूटीफुल नजारा है।

गुरु जी या राजा जी जो भी है अच्छे तरीके से बैठे हुए है और आप देख सकते है की सभी लोगो ने वाइट कलर के कपड़े एंड --